पीछे एक छोटा सा ट्रक दिख रहा है और दो आदमी पीछे खड़े हुए हैं।

और यहां पर मंडप बना हुआ है रोज ब्लू और वाइट कलर से।

यह एक शॉप दिख रही है लुनिया एण्ड कंपनी के नाम से है ये शॉप ।

और कोने में लाल कलर की एक कार दिख रही है जिसके पास एक आदमी खड़ा हुआ दिख रहा है और अंदर--

यह एक होटल या गार्डन की इमेज दिख रही हैं।

एक ए_सी भी लगा हुआ है यहां पर एक फ्लॉवर वाली सीनरी लगी हुई है।

और कुछ महान पुरुषों की इमेज लगी हुई है यहां--

ये एक जेंट्स शर्ट की शॉप दिख रही है सामने।

ये एक एच_डी_एफ_सी बैंक की इमेज दिख रही है।

कुछ बाइक दिख रही हैं और कुछ आदमी बाइक पे बैठे हुए दिख रहे है।

पेंटिंग मशीन रखी हुई है और बड़ी सी प्रिंटिंग मशीन साइड में भी है।

ये एक सड़क की इमेज है यहाँ पर कुछ ऑटोस ऑटो दिख रही है और एक पीछे एक बस दिख रही है फिरोजी कलर की।

हार्ट शेप के टेडी बीयर्स भी दिख रहे है इसमें--

और यहां पर बच्चों के खिलौने भी दिख रहा है।

जहां एक कोने में नर्स खड़ी हुई है कुछ बैठने के लिए चेयर्स लगी हुई है।

में लिखा हुआ है बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है सामने सी_सी_टी_वी कैमरा लगा हुआ--

और कुछ लाल कलर की चेयर नीचे दिख रही है।

और यहां पर कुछ कॉपीस भी है रजिस्टर भी है।

और कुछ बुक्स भी यहां पर रखे हुए दिख रही है।